अंकल खड़े हैं उन्होंने व्हाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट पेहनी हुई है।

दो तीन इंसान भी बैठे हुए हैं इस पत्थर के ऊपर।

टेबुल भी है और वो एक अलमारी है ब्राउन कलर की उसमे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है।

सारे लोग है एक आदमी ने ब्लैक कलर की रे टी शर्ट पहनी हुई है किसी ने रेड कलर की पहनी हुई है।

चेयर का कलर ग्रीन में है और एक टेबल भी है।

ये एक बिल्डिंग है और यहां पे बहुत सारे आदमी हैं।